एक सामने दुकान है जिसमें आराध्या के नाम से बोर्ड लगा हुआ है।

बारिश का मौसम है सभी लोगों ने दुकानदारों ने अपनी तिरपाल लगा रखी है।

एक आदमी के हाथ में प्लास्टिक का डब्बा नजर आ है।

ये एक एच_ए_वी इंटर कॉलेज सहारनपुर की गेट है।

पीछे एक शख्स बैठा है जिसने शर्ट और धोती पहन रखी है।

एक शक्स भी इनके पास खड़ा है और एक एक्टिवा भी खड़ी है।

यहाँ ये सामान सब जमीन पर पड़ा हुआ है इसमें लंबी डाई भी है।

यहां कुछ लोग शराब खरीद रहे हैं।

जिम में गुब्बारे लगे हुए हैं।

ए एक जुडो क्लास की फोटो है।

पर पंखा भी टंग रहा है।

एक दीवार पर घड़ी भी टंगी हुई है।

ये स्टेट बैंक का ए_टी_एम है।

यहां लाइन में कुछ लोग खड़े हुए हैं।

का नाम खान शाही बिरयानी एंड कबाब रेस्टो है।

बाहर गेट के गुब्बारे लगे हुए है जिनका रंग पीला ऑरेंज है।

अलमारी में लॉक भी लगा हुआ है जिसकी चाभी लॉक में ही है।

सामने एक चाय की टपरी सी नजर--

ये एक बहुत अच्छी लोकेशन पर बना हुआ है इसका नजारा भी बहुत ही खूबसूरत है।

एक हार्डवेयर की दुकान है।

बिजली की फिटिंग के लिए सफेद रंग के पाइप भी बिछाए हुए हैं।

इसमें कालीन बिछी हुई है और पंखे लगे हुए है।

कुछ बच्चे स्कूल के बरामदे में बैठे हुए हैं और टीचर इनको पड़ा रहे हैं।

बिल्डिंग का कलर हल्का पीला है।

गाजर भी है कुछ गत्तों में और भी समान है।

एक केवल इधर से उधर जा रहा है यह बहुत अच्छा फोटो है।

यहां पर एक छप्पर तंबूदार बना है।

रात का फोटो है जिसमें कुछ लोग दुकान के अंदर हटे हैं और कुछ लोग दुकान के बाहर खड़े हैं।

इसके टी शर्ट पर तिरंगे का निशान है।

दुकान का शटर बंद है दो दुकानों का शटर खुला हुआ है।